जिसके नीचे चार शटर हैं ।

सामने एक गार्डन है जिसपे घास लगी हुई है छोटी -छोटी है हरे रंग --

यहाँ पे एक ज़मीन है वो मिट्टीदार है थोड़ी सी घास भी निकली हुई है।

और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी लगा हुआ है सफ़ेद रंग का हैं।

यहाँ पे दुकान का जो शटर है वो पीले रंग का है बाहर कुछ डमी है रंग की है पीले रंग की है जिस पर कपड़े बने हुए हैं ।

ये सामने एक गैलरी दिख रही है जहाँ पर एक व्हिलचेर रखी हुई हैं ।

काले रंग की है वहाँ पर हीरो का शोरुम लिखा हुआ बना हुआ हैं ।

जो कैरेट पे रखा हुआ है नीले रंग की जिसपे अखबार बिछा हुआ है उसके पास में अनार हैं ।

वो मेरून रंग का है जिस पर सालिया लगी हुई है।

यहाँ पर एक बल्ब चमक रहा हैं जो पीले रंग का हैं एक इलेक्ट्रीक बोर्ड लगा हुआ हैं सफ़ेद रंग का जिसमे स्विचे लगे हुए हैं।

सामने एक अ चौखट दिख रही है जो पीले रंग की है और सजाई गई है फ़ूलो --

गुलाबी और नीले रंग की हैं।

जो पीले रंग की है स्लेटी रंग के यहाँ पर दो पहाड़ दिख रहे है जहाँ पे घने-घने पेड़ हैं ।

जो स्किन और भूरे रंग की है यहाँ पे कुर्सीयाँ है जो नीले रंग की है दरवाज़ा जो है वो खुला है लकड़ी का हैं ।